आ एक बहुत ही अच्छी फोटो लग रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है यहाँ पे काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं और --

फल की दुकान है। यहाँ पे का काफी सारे फल रखे हुए हैं। सेव रखे हुए हैं संतरा रखे हुए हैं।